उपर की हिस्सों में लाइट लगी हुई है और नीले रंग की दीवार नज़र आ रही है।

दो द्वार प्रवेश काले रंग से रंगे गए हैं।

यह दृश्य एक तालाब का है जिसका पानी हरे रंग का है।

और सीसे भी दिख रहे हैं सामने की ओर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

दीवार को टाइल्स से बनाया गया है।

यह दृश्य किसी स्थान का है जिसमें सामने की ओर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक खिड़की भी दीख रही है और एक पर दो वाला दरवाजा भी नजर आ रहा है।

काले रंग की दीवारें नजर आ रही--

ऊपर की हिस्सों में लाइटे भी लगी हुई नजर आ रही है ।

दृश्य एक रोड का है जिसमें सामने की ओर कई सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

ये गुंबद को भूरे रंग से रंग गया है।

नीचे की जमीन भी सफेद रंग की है।

और बहोत सारी टोकरियां भी नजर आ रही है नीचे की जमीन भूरे रंग की है और ऊपर की जमीन सुरमय रंग की है।

हरे रंग से अलमारियां रंगी हुई है।

सामने की ओर एक इंसान खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इंसान का एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर भी दिख रहा है।

और इंटीग्रेटेड क्षेत्रीय कार्यालय भी लिखा हुआ है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है।

सामने की ओर एक स्टैंड में प्लास्टिक के डिब्बे भी नजर आ रहे हैं ।

सामने की दीवार ईट से बनी हुई दिख रही है।

यह दृश्य किसी स्थान का है जिसमें सामने की ओर कई सारे पौधे एवं फूल नजर आ रहे हैं।

इसकी जमीन मिट्टी से बनी हुई है।

इसकी जमीन भूरे रंग की मिट्टी से बनी हुई है।

और इसके आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं और आकाश बिल्कुल साफ है।